बाजू मैं खिड़कियां भी दिख रहे हैं और डोर भी दिख रहा है खिड़की भी दिख रहे हैं बाजू में--

और अच्छी खासी लंबी चटाई बिछाई गई रंग बिरंगी र अंदर से डाइटिंग भी डाले गए यह पर।--

तो यह प्लान दिख रहा है यहाँ पर बिल्डिंगे बने जा रहे है कोई प्लान दिख रहा है एक छोटा सा खिलौने दिख रहे है जो एक शहर दिख रहा है छोटा --

और उसने अपने सर पर टोपी पहने हुए हैं दो मिस्त्री हथौड़े से मारकर छत गिरा--

एक आदमी ठहरा मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर कोई बैठने के लिए जगह भी दिख रही--

ये किसी को ऑफिस दिखता है शायद और बाहर कुछ दिख रहे हैं और सामने का भी दिख रही है बड़ी ह--

और बीच में चारों डिंग की तरह की तरह घड़ी सरका है डिजाइन किया गया है।

बहोत बच्चों के झूनने के लिए काम आते है बच्चे बहुत मजे से झुलते है ये गार्डन दिख रहा छोटा--

अच्छा सा डेकोरेशन भी किया गया उपर सजावट की गई है अच्छी बड़ी सी क्लास दिख रही हैं ये--

और एक औरत दिख रही हैं यहाँ पर कुछ पौधे दिख रहे हैं। बहुत सारे पौधे --

इधर सब लेडिस का कपड़ा का शोरूम दिख रहा है छोटा सा यहां पर लेडिस के कपड़े मिलते--

ये किसी शादी का मंडप दिख रहा है यहां पर बहोत सारे लोगा आकर ठहरे हुए है लगता है मंडप सजाया जा रहा--

सैमसंग का मोबाइल फोन का दुकान दिखा छोटा सा शाम बाद में स्टैचू भी दिख रहा है पुतला वीवो का बड़ा सा बैनर दिख रहा है वो पिछे झाड़ भी दिख रहा--

एक आदमी बाजु में बाइक चला कर जा रहा हैं और आजू बाजू बड़े बड़े झड़ा दिख रहे हैं खम्बा भी दिख रा--